यहाँ पे देख सकते है ये बच्चा आ बाल बना रहा है हेयरकट --

प्यारा बच्चा है और यह शांत बैठा हुआ है और यह मुर्गा स्टाइल में बना रहा है बाल और ये दीदी अपने भाई को लेकर आया हुआ है।

पंखा भी लगाया हुआ है लाइट में मौजूद दिखाई दे रहा है आप लोगों को और बहोत ही डिजाइनिश मंदिर है।

और यहाँ पर बहुत सारे आदमी हमें ये इंजीनियर बता रहे है इधर काम नहीं हुआ है इधर करो रे भाई --

यह पिज़्ज़ा शॉप है और काफ़ी बड़ा शॉप है देख सकते है पिज़्ज़ा --

यहाँ पे हाथी घोड़ा पाल की जय कनईया लाल की नंदी महाराज घोड़ा हाथी--